आजू बाजू में बहोत सारा खेत है जहां पे ज्यादा से ज्यादा हरियाली है और कुछ ज्यादा ही पेड़ है।

बांस का है और उसमें ब्लैक कलर के पन्नी ऊपर से ढकी हुई है।

यह किसी चीज का ए_टी_एम किसी एक बैंक का ए_टी_एम दिखाई दे रहा है।

और वहां पे एक लैपटॉप भी रखा हुआ है।

एक बहोत बड़ा समुद्र दिखाई दे रहा है जहां पे की दो तीन प्रकार के जहाज है।

और बोर्ड दिखाई दे रहा है वहां पे और कुछ मशीन वहां पे दिखाई दे रही है।

आंटियां भी है और कुछ अंकल है जो के यहां पे मच्छी बेच रहे तरह-तरह की मच्छियां है अलग-अलग तरीके से बेच रहे --